पेड़ पौधों भी लग रहे हैं।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

यहां पर एक मंदिर है और उसके अंदर एक आदमी भी है और वहां पे --

लटक रखे है और वो वहां पे एक टेबिल है उसके ऊपर कुछ यूनिक --

और यहां पे कुछ लोग भी खड़े हैं और यहां पे--

स्कूटी खड़ी है और उसके साइड में एक गाड़ी खड़ी है और उन उसके पीछे एक --

अरे वाउ क्या बात है यार यहां पे बहुत खूबसूरत नजारा है और यहां पे की तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है और इनके पीछे --

और यहां पे बाहर दो स्टूल रखी हुई है बैठने के लिए औरयां का नजारा बहुत खूबसूरत है।

यहां पर कुछ लेडिसे से दिखाई दे रही है और ओ सभी योग में खोए हुए हैं।

वो इसीलिए है कि उनके ऊपर कुछ लोग वगैरह रेसिंग वगैरह कुछ करने के लिए उन्हें रखे हुए हैं।